यहां पर एक डेरी है और डेरी के साइड में एक रेडीमेड शॉप है साडी और रेडिमट्स कपड़ों की शॉप है।

यहां पर किसी जंगल एरिये का जंगल एरिया है और जो की बोहत सुन्दर दिख रहा है कुछ हाइट से लिया गया है पहाड़ी के हाइट से दिख रहा है यहां से बोहत सुन्दर दिख रहा है।

और खेत के किनारे से कुछ पेड़ लगी हुए है जो की बड़े-बड़े है और खेत के बीच मैं भी पेड़ लगे हैजो बड़े-बड़े है।

और नदी कि किनारे पे कुछ लोग खड़े हुए है आ रहे जा रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी हैं नदी के ब्रिज के नीचे।

यहाँ पर ये एक डैम है और डैम के यहाँ से अअअ गेट पानी की गेट नदी के प गेट खुले हुए है पानी के गेट खुले हुए है दो गेट खुले हुए है।

और यहाँ पर झूले लगे हुए है कई प्रकार की झूले लगे हुए है लाइट लगी हुई है और बहुत झूलों को डेकोरेट लाइट से--

नीचे साइड में एक हॉल है जिसमें लोग बैठे हुए हैं बोहोत सारे चेयर्स पे कुछ बाहर हैं।